पे बलुई मैदान है और अगल बगल में हरे हरे घांस दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे लंबे छोटे--

फील्ड में खेतों में बहोत सारे पेड़ लगाए गए हैं और पेड़ उग चुके है और अगल बगल में पानी--

खिलौने के दुकान में बहोत सारे डॉल और कैक्टस और बैट बॉल और किचन सेट बार्बी डॉल सेट --

अंदर में भी चेयर है कुछ लोग बैठे हुए है ऊपर में लाइट जल रही है टी_बी है चेयर है।